यह एक जिम है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहाँ एक फुटबॉल मैच हो रहा है जिसमें दो लोग पार्ट दो ग्रुप पार्टिसिपेट किए हैं।

एक ने वाइट स टी-शर्ट पहनी है एक ने ग्रीन टी-शर्ट पहना है।

एक बच्चा है जो बॉल को अपने टीम की तरफ पास कर रहा है बाकी विरोधी टीम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

यह एक शादी का इवेंट है।

वाइट पीकॉक रखा हुआ है।

बहुत से लोग बैठे हैं चारों तरफ--

करने के लिए और यहाँ गर्मी के मौसम में --

अपना एड्रेस नाम और डेट डाल रहे हैं।

जहाँ पे अभी कोई नहीं है एक टेबल है जिस पे कुछ फाइल्स रखी हुई हैं।

यह एक पुरानी इमारत है।

कुछ लोग यहाँ ट्रैक पे टहल रहे हैं।

यह एक दुकान है जो अभी न्यू ओपन हुआ है।

पाउडर मेकअप की सारी सामान मिलते हैं।

यहाँ एक सभा हो रही है जिसमें बहुत सी महिलाएं बच्चे--